ये जिम हैं यहां पर शरीर से --

पनीर बनाया जाता है मसल्स को तैयार करा जाता है यहां पर बहोत सारी मशीनस है।

प्रिंस पीपींग सिस्टम्स मतलब कि यहां पर दो इमारतें हैं एक नीचे एक ऊपर।

नाइस मेहंदी रेड कलर की नाइस डिजाइन--

दो गर्ल्स भी हैं ढेर सारी गर्ल हैं।

दीवार भी है पडदा भी लगा हुआ है बहोत नाईस वाइट कलर की चप्पल है।

वो रखा है अंदर से शॉप पर कप भी रखा है कूलर भी है कंप्यूटर भी है रेड कलर --

बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहुत सारा बाइक खड़ी है।

मैं तो करके जिसने देश उनकी सभी की फोटो लगी है जैसे महात्मा गांधी बुद्ध वगैरा वगैरा--

वो अ यह तो बहुत बड़ा महल की तरह दिख रहा है। किचन बैठने का स्थान भी है।